जिसमें बहुत सारा बाइसाइकल भी दिखाई दे रहा है।

और इसका बिल्डिंग का पीछे बहोत सारा जंगल भी दिखाई दे रहा है।

कमरा का अंदर में दो आईना दिखाई दे रहा है।

और रूम का अंदर में एक दर्पण भी है।

सामने एक बड़ा सा दुकान दिखाई दे रहा है।

यहां में एक शानदार सा कमरा दिखाई दे रहा है।

ऊपर में एक फैन दिखाई दे रहा है।

यहां में बड़ा सा दो घर दिखाई दे रहा है।

इस कमरा का अंदर में बहुत सारा जनरेटर दिखाई दे रहा है।

और नदी का बगल में छोटा छोटा सा घर दिखाई दे रहा है।

कमरा का अंदर में दो बिस्तर दिखाई दे रहा है।

और दुकान का अदंर में पेप्सी और कोका कोला भी दिखाई दे रहा है।